मेडिकल लाइन में जाने के लिए ऐसे कोलेजो में एडमिशन लेते हैं। इन कोलेजो में मेडिकल के बारे में सिखाया जाता है।

यह एक स्वास्थ केंद्र है।